पार्टी के लिए सब रेडी हो सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बढ़ियां सा--

कोई मंदिर दिख रहा है छोटा सा फुल माला सजा हुआ है गेंदे के लगे हुए है तोरन लगा हुआ है।

रेलिंग लगी हुई है बहोत शानदार तरीके से--

हवेली का निशान दिख रहा है या किले का निशान नजर आ सकता है।

और पीछे का टायर मोटा है सामने का पतला है।